इसके ऊपर पोस्टर लगा हुआ है।

इसके नीचे बहोत सारा डस्टबीन में कचरा पड़ा हुआ है।

मंदिर जैसा दिख रहा है इसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कीर्तन कर रहे हैं।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

खम्भे मे लाइटें भी लगी हुई हैं।

खिड़कियां दिखाई दे रही हैं और एक पोस्टर लगा हुआ है जिसपे कुछ लिखा हुआ है।

और इसमें पीले कलर की कुछ लाइटे भी दिखाई दे रही हैं।

मंदिर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है इसमें दो कलर का बना हुआ है।

और एक खंबा भी दिखाई दे रहा है जिसमें लाइट लगी हुई है।

इस तस्वीर में एक मेट्रो स्टेशन जैसा कुछ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में गार्डन जैसा कुछ बना हुआ है जिसमें एक इंसान भी बैठा हुआ है।

और गुलाब के फूल भी दिखाई दे रहे हैं और हिरण के पुत्ते कुछ दिखाई दे रहे हैं।

एक खिड़की भी दिखाई दे रही है।

एक खेत जैसा कुछ दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत सारे बांस गड़े हुए हैं उसके ऊपर तिरपाल पड़ा हुआ है।

बहुत बड़ी बिल्डिंग भी बनी हुई है।

तस्वीर में एक घर बना हुआ है।

गमले भी दिखाई दे रहे हैं इसके पीछे बड़ा घर बड़ा सा घर बना हुआ है।

डस्टबीन भी दिखाई दे रहा है और खंबा भी दिख रहा है।

बाहर की टाइप कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

उसके पीछे काफी सारे हरे रंग के पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इसमें बहुत सारे लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

बाइक हो गई बस हो गई टेंपो हो गया।

ये काफी सारी कुर्सी पड़ी हुई हैं पीले रंग की।

पुतले भी रखे हुए हैं जैसे कि मंकी हो गया हाथी हो गया।

काफी सारे गमले भी दिखाई दे रहे हैं। इसमें पेड़ लगे हुए हैं।